टायर नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इस चित्र में गाड़ियां दिख रही हैं।

जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है।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

इस चित्र में मिठाई की दुकान दिख रही है।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

केक रखा हुआ है केला और ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं।

उसमें केक रखे हुए हैं।

दुकान का नाम ड्रीमलैंड है।

कार नजर आ रही है।

टोपन टाउन आइसक्रीम दिख रही है।

पंचिंग बैग दिख रहा है।

एक ने हेलमेट पकड़ा है।

मायोनिज और केचप रखा हुआ है।

एक लड़की ने गुलाबी स्कर्ट पहना है।

इस चित्र में जिम दिख रहा है।

स्वेट इज फेट लिखा है।

काफी सारे सेट रखे हुए हैं।

कुछ लाल फुग्गे लगे हैं।